ये दुर्गा जी की झांकियां हैं इनमें हमें दिख रहा है दुर्गा मैया दिख रही हैं और शंकर भगवान दिख रहे हैं।

यहां बहुत ही खूबसूरत नजारा है सभी लोग यहां फोटो खिंचवा रहे हैं।

हेलो गाइस यहां आपको दिख रहा होगा भारत पेट्रोलियम।

हेलो गाइस ये एक मस्जिद दिख रही है।

हेलो गाइस ये एक चौतरा है चौतरा के ऊपर एक पीपल का पेड़ है।

हेलो गाइस ये एक बहुत बड़ा मंदिर दिख रहा है।

और इहां ए_टी_एम से लोगा पैसे निकाल कर ले जाते हैं लेकिन अभी ये बंद है।

यह बिल्डिंग दो मंजिल है और इसके सामने एक अल्टो कार खड़ी है।

यह एक मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम है।